यह मूर्ति अलग-अलग तरह की दिख रही है | इसके पीछे बहुत सारी नीले कलर की टाइल्स लगी हुई है| ये बहोत सुंदर दिख रही है।

यहाँ एक घर है जो कि बोहोत बड़ा दिखाई दे रहा है इसके अंदर बोहोत सारी लाइट और बोहोत सारी खिड़कियाँ और बोहोत सारे दरवाजे दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक जगह है जिसके आस-पास बोहोत सारी दुकानें दिख रही हैं और एक दुकान पर बोहोत सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

और यह जगह बोहोत सुंदर लग रही है।